तीन-चार आदमी दिख रहे हैं टाइल्स दिख रहे हैं।

अजंता डेयरी दिख रहा है लिखा हुआ।

नीचे ढेर सारे आदमी दिख रहा है दो तीन दुकान दिख रहा है।

छोटा-छोटा पौधा दिख रहा है।

तस्वीर में जमीन दिख रहा है।

ढेर सारा लड़का दिख रहा है।

घड़ी दिख रहा है टाइल्स दिख रहा है।

सामान दिख रहा है दो पंखा दिख रहा है।

तस्वीर में घर दिख रहे हैं।

दुकान का नाम दिख रहा है।

तस्वीर में घर दिख रहा है।

कपड़ा दिख रहा है टेबुल पर रखा हुआ।

सामान गिरा हुआ है एक कुर्सी दिख रहा है टेबुल दिख रहा है।

पोस्टर दिख रहा है आदमी दिख रहा है ।

पेड़ दिख रहे हैं करकट दिख रहा है।

दो तीन दिख रहा है ब्लू दिख रहा है झंडा दिख रहा है।

छोटा-छोटा घास दिख रहा है आदमी दिख रहा है।

तस्वीर में घर दिख रहे हैं छोटा-छोटा पेड़ पौधा दिख रहे हैं वाइट पोल दिख रहे हैं लाइट बर रहे हैं।

मैक्स लिखा हुआ दिख रहा है।

लाइट ढेर बर रहा है कैमरा दिख रहा है।

तस्वीर में एक पोस्टर दिख रहा है उस पर लिखा है सुधा।

तस्वीर में पेड़-पौधा दिख रहा है।

ऊपर आसमान दिख रहा है अगल-बगल पेड़ दिख रहे हैं।

स्टेज दिख रहा है जयमाला दिख रहा है।

तस्वीर में सीढ़ी दिख रहा है।

इस तस्वीर में तीन-चार कुर्सी दिख रहे है सोफा दिख रहा है।

ऊपर आसमान दिख रहा है घर दिख रहा है।

लोहा का घेरा हुआ रोड दिख रहा है।

मैट दिख रहा है सीसा दिख रहा है।

छोटा-छोटा डेक्स दिख रहा है।

वाइट बिस्तर दिख रहे हैं बोर्ड दिख रहे हैं।

तस्वीर में मूर्ति दिख रहा है घर ढेर सारा दिख रहा है।

ऊपर बादल काला दिख रहा है नीचे रोड दिख रहा है।

ढेर सारे घर दिख रहे हैं मूर्ति दिख रहे हैं।

रोड दिख रहा है पत्ता दिख रहा है।

सामान दिख रहे हैं दुकान दिख रहा है।

घर दिख रहे हैं खिड़की दिख रहे --

ढेर सारे आदमी दिख रहा है।

खिड़की दिख रहा है बॉल बर रहा है।

बेड दिख रहे हैं वाइट तकिया दिख रहे हैं डोर दिख रहे हैं।

तस्वीर में घर दिख रहा है।

तस्वीर में चार्ट छत दिख रहा है।

हुआ दिख रहा है बांस बल्ला दिख रहा है।

पटरा दिख रहा है ढेर सारा आदमी दिख रहे हैं।

तस्वीर में घर दिख रहा है।

नीचे जमीन दिख रहा है अगल-बगल घर दिख रहा है।

लिखा हुआ दिख रहा है।

दो हवा हवाई गाड़ी दिख रहा है।

छोटा गमला दिख रहा है वाइट में पेड़-पौधा दिख रहा है।

पोस्टर तो दिख रहा है गेट दिख रहा है।

छोटा-छोटा पेड़-पौधा पहाड़ पर दिख रहा है ऊपर आसमान दिख रहा है ब्लू नीला।

वेंटिलेटर दिख रहा है पंखा दिख रहा है।

तस्वीर में घर दिख रहा है।

लाइट भी बढ़ रहा है ऊपर सामान दिख रहा है।

तस्वीर में घर दिख रहा है तबला गितार --

आदमी ढ़ेर सारा दिख रहा है बैठे हुए हैं एक आदमी दीवाल में खड़ा दिख रहा है।

तस्वीर में घर दिख रहा है ऊपर आसमान दिख रहा है।

ढेर सारा बड़ा-बड़ा पौधा दिख रहा है।

दो-तीन पेड़ दिख रहे है देवाल--

दिख रहा है घेरा हुआ लोहा से दिख रहा है।

अंदर गाड़ी लगा हुआ दिख रहा है पेड़-पौधे दिख रहे हैं।

बाउंड्री दिख रहा है घर दिख रहा है।

पेड़ पौधा दिख रहा है खिड़की दिख रहा है।

तस्वीर में पेड़ पौधा दिख रहे हैं।

गाड़ी का इंजन खुला हुआ है।

अगल-बगल आदमी दिख रहे है।

ऊपर आसमान दिख रहा है नीचे जमीन दिख रहा है।

घर में खिड़की दो चार दिख रहा है।

जमीन दिख रहा है ऊपर आसमान दिख रहा है।

तस्वीर में घर दिख रहा है।